और लाइट्स भी चमकीली है और आगे ही नीले कलर के डिब्बे पर आईडिया कर के लिखा हुआ है।

यह एक आइडिया कंपनी का शॉप है जो कि न्यू हो सकता है इसलिए इसकी सजावट पीले और लाल बलूंस फुगो में की गई है।

हर चित्र आसमान की तरह है आसमान नजर आ रहा है और ऊंचे ऊंचे पेड़।

यह एक स्टैचू टेबल है जहाँ पर लोगों की कथाएं या तो फिर पुराने ज़माने में जैसे लोग रहा करते थे।

यहाँ एक मकान है जो की पुराना है और में इसके मकान भी हो सकता है या तो फिर हाई स्कूल भी हो सकती है स्कूल गॉरमेंट स्कूल भी हो सकती है जिसके आगे पेड़ है।